यहां पर कूल ब्रेक लिखा हुआ है जो येलो कलर की लाइट में जल रहा है और इधर रेलिंग के अंदर साइड कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

और दीवाल पर साइड में कैमरा लगा हुआ है और ए_सी लगी हुई है रेलिंग के बाहर साइड कुछ पेड़ लगे हुए जिस पे ग्रीन कलर की लाइट्स लगी हुई है।

और ये जो ए_टी_एम के दरवाजे हैं वो काँच और लोहे के हैं।

और कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं और यहां पर लगता है ट्रांसफार्मर --

और एक दीवाल है साइड में और जो वाइट कलर से पेंट है।

और और अलग अलग तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं कुछ येलो कलर में है और कुछ ग्री ग्रीन कलर में।

और वाइट कलर की टेबल लगी हुई है और एक उसी के पास में येलो कलर की बैठने के लिए चेयर्स रखी हुई है।

और टेबल के पास चप्पल पड़ी हुई है और र कमरे में एक रस्सी है जिसपर कपड़े टंगे हुए हैं।

उसके ऊपर चर्च पर हरे कलर का कुछ लिखा हुआ है।

दरवाजा कांच का है और येलो कलर से पेंट है दुकान पुरी।

है और उसके इधर साइड में एक ओर घास लगी हुई है।

कुछ जगह पर ऑटो और फोर व्हीलर पार्क की गई--

और रोड के किनारे बहुत बड़े बड़े से पेड़ भी लगी हुई है हुए।

यहां पर एक ट्रेन है राइड वाली जो कि लोहे की है और उसके ऊपर की छत रेड कलर से पेंट हुई है।

और बस में बहोत सारे बच्चे बूढ़े और फैमिली बैठी हुई है जोकि राइड करने में मस्ती कर रही है।

यह कोई सरकारी भवन या हेरिटेज होटल हो सकता है।

आगे एक पेड़ है जिसमें नीचे रेड और ग्रीन कलर पेंट से मार्क किया गया है।

और साइड में रि रेड और वाइट कलर के बलूंस लगे हुए हैं।

ये एक शॉपिंग मॉल है जिसमें इनॉक्स सिनेमा भी है।

यहां पर फैशन और खाने पीने की जगह भी है।

नारियल या खजूर जैसे लंबे पेड़ भी दिख रहे हैं।

लैपटॉप रखा हुआ है वाइट कलर की टेबल्स पड़ी हुई हैं।

और इस किस फर्श अ फर्श में टाइल्स लगे हुए हैं जो व्हाइट कलर के हैं।

साइड में लैपटॉप वगैरा रखा हुआ है जिसमें समान चेक किया जाता है।

और यहां पर द हिंदुस्तान कॉन्सेप्ट इंग्लिश का बोर्ड लगा हुआ है उसका कलर नीला लाल पीला है।

और यहां पर सीलिंग सेट है वंडन ट्री लाइट स्ट्रक्चर है जो की एक नेचर इंस्पायर्ड लुक दे रहा।

स्विमिंग पूल के आसपास बहोत सारे ग्रीनरी है जो कुछ घास है और कुछ पेड़ हैं।

और अंदर बहोत सारी फोरव्हीलर खड़ी हुई हैं और हरे हरे गमले भी रखे हुए हैं।

और उसके ऊपर रेड कलर की चेरी रखी हुई है और आसपास तीन चम्मच रखे हुए हैं।

नीचे जमीन नी नीचे जमीन पर थोड़ा गढ्ढा दिख रहा है।

और नीले कलर की बहुत गंदगी फैली है।

यह एक एयरपोर्ट का सीन है जहां पर बहोत सारे आदमी हवाई जहाज की ओर जा रहे हैं।

जोकि क्रीम कलर से पेंट है और एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे--

फोटो में लोग सब्जी खरीदते व बेचते हुए लग रहे हैं।

मार्केट में हरी सब्जियां आलू और भी तरह के वेजिटेबल्स दिख रहे हैं।